इस चित्र में बड़ा सा तालाब नजर आ रहा हैं तालाब में पानी ढेर सारा पानी मौजूद हैं लहरे- लहरे कर कर आगे बढ़ रहा हैं।

पीछे की ओर अब पेड़ पोधे नज़र आ रहे हैं हरे-भरे घने-घने पेड़ दिख रहे हैं ऊपर की ओर खुला आसमान दिख रहा हैं ये चित्र अभी धुंधली-धुंधली दिखाई दे रही है।

इस चित्र में बड़ा सा क्लासरूम नजर आ रहा है क्लासरूम में ढेर सारे बेंच रखे हुए हैं बेंच पर अमम बालक व्यक्तिओ के बैगस --

इस चित्र में एक रूम नजर आ रहा है रूम में एक स्टूल रखा हुआ है टेबल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है दो व्यक्ति सामने की ओर ठहरे हुए है एक व्यक्ति अपने कपड़े देख रहा है दूसरा व्यक्ति बात करने में व्यस्त है।

इस चित्र में कुछ खेती नजर आ रही है यहाँ पर हरी-भरी घास है बड़े-बड़े पेड़ है मेरा व्यक्ति तो कोई नजर नहीं आ रहा है।

इस चित्र में एक ऊपर अ छत से ऊपर का शहर का नजारा दिख रहा है शहर में ढेर सारे बिल्डिंग घर बंगले मौजूद है कुछ छोटे घर है कुछ बहुत ही ऊँचे घर हैं।

और दूसरा पुतला ने इंडियन कपड़े पहने हुए हैं ऊपर की ओर छत पर सफेद लाइटें लगाई गई है और साइड साइड में हैंगअर पे लाइन से तरह -तरह के कपड़े हैं।